इस इमेज में देखिएगा फ्रेंड सामने एक स्टैचू दिखाई दे रहा है बड़ा सा है ना।

यहां पे देखिएगा इस इमेज में फ्रेंड पहाड़ दिखाई दे रहा है काफी बड़ा सा पहाड़ है।

वो स्कूल दिखाई दे रही है कैंब्रिज स्कूल है ये प्राइमरी बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक पेड़ दिख रहा है उसके पास में एक आदमी खड़ा हुआ है।

जैसे की बॉल दिखाई दे रही है फुटबॉल है ना और बैडमिंटन दिखाई दे रहें हैं।

काफी सारी पन्निया हैं प्लास्टिक की।

और काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर फ्रेंड --

और भगवान जी की मूर्तियां रखी हुई है लाइन से।

एक आ हॉस्पिटल का बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है हैना और जहां पे देखियेगा --